यहां पे एक बोतल रखी हुई है और यहां पे एक बैग रखा हुआ है।

मेजों पे सफेद पन्नी जैसा कुछ भरा रखा हुआ है और विंडो वगैरा भी बहुत हैं।

एक ल आदमी है जो झाड़ू लगाता सड़क पे दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे ठेले लगे हुए है उनपे पुड़िया पान वगैरह टंगे हुए है और यहां पे एक दो ऑटो इधर के खड़े हुए है।

यहां पे एक आदमी पैसा निकालते हुए दिखाई भी पड़ रहा है ये रेड कलर का है।

र्चा छपा हुआ है ईस पे स्कैन करके पैसा डाल दिए जाते हैं यहां--

यहां पे एक दुकान है। यहां पे बहोत सारे खेल वगैरे के श समान रखे हुए हैं जैसे बैट बॉल हॉकी फुटबॉ --

कुछ लोगों के पास ट्रॉली बैग है कुछ लोगों के पास नहीं।

जहाज में से एक खिड़ विंडो निकली हुई हैं।

पीछे परदे वगैरा पड़े हुए हैं और यहां पे साइड में कुर्सियां काली कलर की--

वो कुल्ला करने वाले भी पॉट बने हुए हैं और यहां पे नीचे फर्श पड़ी हुई--

यहाँ में साइड में बहोत सारे एंगेल लगे हुए हैं और अंदर पेड़ वगैरा लगे हुए हैं लोहे का फाटक लगा--

ये एक हेयर कट की दुकान है यहां पे हर कलर के बाल वगैरा कटते हैं हर डिजाइन के बाल।

यहां पे बहोत ज्यादा भीड़ लगी हुई है कुछ बाइकें वगैरा खड़ी हुई हैं।

ये दुकान जैसी बनी हुई है इसके अंदर एक अलमारी और उसके अंदर बहोत सा सामान भरा हुआ--

एक पार्क है पार्क देखने में बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा है।

यहां पे एक दो पेड़ बने हुए हैं और ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है।

बहोत सारी लकड़ी की जो पाटरी होती है वो बिछाई गईं हैं।

यहां पे फायर ब्रिगेड में ये लो जो सिलेंडर सा लाल कलर का मिलता है यहां पे वो सारी चीजे मिलती हैं।

उसके अंदर बहुत सारी सारी टंकी वगैरा भी रखी हुई है।